ये एक फर्नीचर शॉप की फोटो है।

बहोत सारी लोग आये है खरीदने फूलों को साइड मे बहोत सारे पीले फूल भी है--

हां फोटो है जहां पर कुछ मच्छियां बेच रहे हैं और यहां पे टब में पानी में बहुत सारी मच्छियां हैं आगे भी बहुत सारी मछलियां हैं।